यहाँ पर काफी बड़ा सारा यह मगहरा टाइप्स का दिख रहा है जो काफी सुंदर लग रहा है यह दूर से काफी बहुत ही सुंदर लग रहा है यह काफी बड़ा ऊपर वाइट् निचे रेड पत्थर किल्ले बने हुए है।

हरियाली सी नजार आ रही है इसके नीचे का बहुत ही स्पेस अच्छा लग रहा है जो काफी हरियाली से भरा हुआ है यहां पर कुछ झूले वगेरा भी दिख रहे है।